और बीचों बीच पेड़ों और बिल्डिंग के सामने एक मंदिर बना हुआ आप देख सकते हो कुछ लोग खड़े हुए हैं और--

और मंदिर पे लाइट लगी हुई हैं जैसे कि मैं देख सकता हूं कि आदमी भी बहोत ज्यादा है इस मंदिर पर।

जैसे कि मुझे दिख रा है एक कमरा बना हुआ है जैसे कि एक पंखा रखा हुआ है और कुछ लाइटे लगी हुई है।

जैसे मे देख सकता हूं कि कुर्सी टेबल भी रखी हुई है।

रिक्शा खड़ा हुआ है गाड़ियां खड़ी हुई है और रोड मेरे को दिखाई दे रही है और लाइट दिखाई मेरे को दे रही है।

जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि दो बिल्डिंग बनी हुई हैं द दो मार्शल खड़ी हुई हैं जैसे कि--

जैसे कि ये सभी खड़े कुछ व्यक्ति बैठा हुआ है वहां पर कुछ यहां वस्तु डली हुई हैं।

डब्बा डब्बी कुछ टेबिल में केक रखा हुआ है उसपे गुड़िया बैठी हुई है कुछ लाइट बगैर लगा हुआ है।

जैसे कि में उसको सामने दिखाई दे रहा है कि जैसे वो एक कमरे के अंदर कुछ कपड़े वस्तु धरी हुई है। दो और आदमी इसके अंदर है और कुछ --

और उसमें लगी हुई है कई प्रकार कि लाइट और खम्मे दिख रहे है कुछ व्यक्ति है कुछ--

जैसे कि कुछ मेरे को सामने दिखाई दे रही हैं चीजें--

कुछ टेबलें रखी हुई हैं कुछ कुर्सी रखी हुई जैसे कि बाहर एक सामने एक लेडिज खड़ी हुई है जैसे कि कुछ फैन लगे हुए हैं लाइट लगी हुई है मेरे को दिखा रहा है।

लगे हुए हैं कुछ घोड़े बने हुए कुछ कमरे में लाइटें लगी हुई हैं कुछ पर्दे लगे हुए हैं जैसे कि टेबल ।